इस ट्यूटोरियल के अंत तक हम सीखेंगे plot color line style linewidth की विशेषताओं को बदलना
embedded latex के साथ प्लॉट में टाइटल जोड़ना
x और y axes लेबल करना plot में एनोटेशन्स जोड़ना
axes की लिमिट्स प्राप्त और सेट करना
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1404 ऑपरेटिंग सिस्टम
python 343 ipython 510
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि ipython कंसोल पर बुनियादी python कमांड्स कैसे रन करें और इंटरैक्टिव ढंग से प्लॉट का उपयोग कैसे करें
यदि नहीं है तो वेबसाइट पर पूर्वापक्षा python ट्यूटोरियल देखें
ipython3 से शुरू करते हैं
ipython3 टाइप करें और एंटर दबाएं
pylab package आरंभ करते हैं
percentage pylab टाइप करें और एंटर दबाएं
सबसे पहले हम एक साधारण प्लॉट बनायेंगे और इसे परिवर्तित करना शुरू करेंगे
टाइप करें x = linspace ब्रैकेट्स में minus 2 comma 4 comma 20 और एंटर दबाएं
फिर टाइप करें plot ब्रैकेट्स में x comma sinx और एंटर दबाएं
अब हम प्लॉट विंडो में sine curve देख सकते हैं
pylab के अनुसार लाइन का डिफॉल्ट रंग और मोटाई है
अब इस curve के पैरामीटर्स बदलते हैं
ऐसा करने के लिए हम प्लॉट कमांड में अतिरिक्त आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं
सबसे पहले हम ipython कंसोल में clf टाइप करके प्लॉट विंडो साफ करेंगे
अब आप एक खाली प्लॉट विंडो देख सकते हैं
अब अतिरिक्त color argument के साथ समान sine curve प्लॉट करें
अतः हम टाइप करेंगे plot ब्रैकेट्स में x comma sinx comma इन्वर्टेड कॉमा में r और एंटर दबाएं यहाँ argument r लाल रंग के लिए है
प्लॉट विंडो पर समान sine curve अब लाल रंग में दिखते हैं
प्लॉट विंडो को बंद न करें केवल मिनिमाइज करें
हम linewidth argument का उपयोग करके लाइन की मोटाई को बदल सकते हैं
इस समय हम प्लॉट विंडो पर cosine curve ड्रा करेंगे
अतः टाइप करें plot ब्रैकेट्स में x comma cosx comma linewidth is equals to 2 और एंटर दबाएं
प्लॉट विंडो में लाइन की मोटाई 2 के साथ cosine curve निर्मित होता है
अब linewidth 3 के साथ नीले रंग में एक sine curve प्लॉट करने की कोशिश करते हैं
यहाँ शुरू से ही प्रत्येक कमांड जिन्हें हम ipython कंसोल पर टाइप करते हैं को निष्पादित करने के लिए एंटर की दबाएं
clf टाइप करके प्लॉट विंडो को साफ करें
आप फिर से खाली प्लॉट विंडो देखेंगे
टाइप करें plot ब्रैकेट्स में x comma sinx comma इंवर्टेड कॉमास में b comma linewidth is equal to 3
color और linewidth का संयोजन हमारे लिए कार्य करेगा
solid style के बजाय dotted style में पलॉट प्राप्त करने के लिए linestyle में डॉट डालें
पहले प्लॉट विंडो को साफ करने के लिए clf टाइप करें
अब टाइप करें plot ब्रैकेट्स में x comma sinx comma इंवर्टेड कॉमास में dot
हमें sine curve डॉटेड स्टाइल में प्राप्त होता है
अब plot की जानकारी देखते हैं
टाइप करें plot question mark और एंटर दबाएं
विडियो रोकें इसका अभ्यास करें और पुनः विडियो चलाएं
लाल dash line और linewidth 3 में x verses cosx का curve प्लॉट करें
हल के लिए कंसोल पर जाएं
प्लॉट विंडो को साफ करने के लिए clf टाइप करें
टाइप करें plot ब्रैकेट्स में x comma cosx comma इंवर्टेड कॉमास में r hyphen hyphen comma linewidth equals to 3
linewidth argument और linestyle के संयोजन का उपयोग करते हैं
अब जानते हैं कि color style और thickness के साथ bare minimum plot कैसे बनाएं
अब प्लॉट को और रूपांतरित करके देखें
function minus x square plus 4x minus 5 के लिए प्लॉट के साथ शुरू करते हैं
अब टाइप करें plot ब्रैकेट्स में x comma minus x multiplied by x plus 4 multiplied by x minus 5 comma इंवर्टेड कॉमास में r comma linewidth is equal to 2
हम इस समीकरण का कर्व प्लॉट विंडो में देखेंगे
लेकिन आकृति में प्लॉट का वर्णन करने वाला कोई विवरण नहीं है
प्लॉट में टाइटल जोड़ने के लिए title command का उपयोग करें
अतः टाइप करें title ब्रैकेट्स में इंवर्टैड कॉमास में parabolic function minus x square plus 4x minus 5
title command जैसा कि आप देख सकते हैं एक argument के रूप में string लेता है
हम प्लॉट विंडो पर टाइटल देख सकते हैं लेकिन यह फार्मेटेड नहीं है और साफ नहीं दिख रहा है
यदि यहाँ fractions और complex फंक्शन्स होते हैं तो यह और भी जर्जर दिखाई देगा
साफ दिखने के लिए टाइटल को latex फॉर्मेट में लिखते हैं
latex फॉर्मेट के लिए हम string के आगे और पीछे dollar sign रखेंगे
टाइप करें title ब्रैकेट्स में r इंवर्टेड कॉमास में parabolic function dollar minus x square plus 4x minus 5 dollar
यहाँ r का अर्थ है कि string को raw string माना जाना है
यह सभी escape codes को अनदेखा करेगा
जैसा कि हम देख सकते हैं कि polynomial टाइटल में अब फॉर्मेटेड है
हालांकि हमारे पास टाइटल है प्लॉट x और y axes लेबलिंग के बिना पूर्ण नहीं होता है
अतः हम x और y axes को latex style में लेबल करेंगे
टाइप करें xlabel ब्रैकेट्स में r इंवर्टेड कॉमास में dollar x dollar और ylabel ब्रैकेट्स में r इंवर्टेड कॉमास में dollar y dollar
प्लॉट अब लगभग पूर्ण हो गया है
अब हम local maxima के रूप में point2 comma minus 1 को मानकर प्वाइंट्स को नाम देंगे
प्वाइंट को देने के लिए हम function annotate का उपयोग करेंगे
टाइप करें annotate ब्रैकेट्स में इंवर्टेड कॉमास में local maxima comma xy equals to ब्रैकेट्स में 2 comma minus 1
हम 2 comma minus 1 प्वाइंट पर local maxima देख सकते हैं
annotate command में पहला argument प्वाइंट का नाम है
दूसरा argument प्वाइंट के coordinates का प्रतिनिधित्व करता है
यह दो नंबर्स सहित एक tuple है पहला x coordinate है और दूसरा y coordinate है
आगे टाइप करें xlim brackets
फिर टाइप करें ylim brackets ylim function वर्तमान yaxis limits वापस करता है
xlim inside the brackets minus 4 comma 5 टाइप करके xaxis की लिमिट minus 4 से 5 सेट करें
उसी तरह yaxis की लिमिट सेट करें
टाइप करें ylim ब्रैकेट्स में minus 15 comma 2
विडियो रोकें इस अध्याय हल करने की कोशिश करें और विडियो पुनः चलाएं
point minus 4 comma 0 पर root नामक annotation बनाएं
पहले annotation में क्या होता है
हल के लिए ipython कंसोल पर जाएं
टाइप करें annotate ब्रैकेट्स में इंवर्टेड कॉमास में root comma xy is equal to minus 4 comma 0
प्रत्येक annotate command फिगर पर नया annotation बनाता है
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा अतिरिक्त arguments पास करके color line width line style जैसे प्लॉट के attributes को परिवर्तित करना
title command का उपयोग करके प्लॉट में टाइटल जोड़ना
string के पहले और बाद में $ चिन्ह जोड़कर latex style formatting सम्मिलित करना
xlabel and ylabel कमांड्स का उपयोग करके x और y axes लेबल करना
annotate कमांड का उपयोग करके प्लॉट में annotations जोड़ना
xlim and ylim कमांड्स का उपयोग करके axes की लिमिट सेट और प्राप्त करना
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
लाइन की मोटाई 4 के साथ minus 2pi से 2pi के मध्य cosine graph का एक प्लॉट बनाएं
प्रलेखीकरण पढ़ें और ज्ञात करें कि क्या command ylabel में टेक्स्ट के alignment को परिवर्तित करने का कोई तरीका है
और उत्तर हैं लाइन की मोटाई 4 के साथ प्वाइंट्स minus 2pi और 2pi के मध्य cosine graph प्लॉट करने के लिए हम linspace और plot कमांड का उपयोग करेंगे जैसे x equals to linspace ब्रैकेट्स में minus 2pi comma 2pi
plot x comma cosx comma linewidth equals to 4
दूसरे प्रश्न का उत्तर है नहीं हमारे पास ylabel कमांड में टेक्स्ट के alignment को परिवर्तित करने के लिए कोई विकल्प नहीं है
क्या इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपको कोई प्रश्न है
मिनट और सेकंड चुनें जहाँ पर आपके पास प्रश्न है
अपना प्रश्न संक्षिप्त में बताएं
क्या आपके पास कोई पाइथन पर सामान्य/तकनीकी प्रश्न है
कृपया fossee फोरम पर जाएं और अपना प्रश्न पोस्ट करें
fossee टीम लोकप्रिय पुस्तकों के कई हल किए गए उदाहरणों की कोडिंग का संयोजन करती है
हम ऐसा करने वालों को मानदेय और प्रमाण पत्र देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से में जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद